दोनों लगी हुई हैं। टेबिल बेंच दोनों लगी हुई हैं। यहां पर विंडो लगी हुई हैं। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।

पिंक कलर की लग रही है रेड कलर की गपाड़ी लग रही है। टेम्पू के रिक्शा की तीन टेम्पू खड़े हुये हैं जोकि एक घर के नीचे खड़े हुए हैं।

यहाँ पे बिल्डिंग है जो कि काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही य है ओर उसके कम से काम ज्यादा से तीन तीन छह सात आठ --

ब्राउन कलर कि कुर्सी लगी हुई है और दीवाल पर टेक्चर भी है और फुग्गे लगे हुए हैं येलो और ब्लैक कांच लगे हुए हैं तीनों साइड --

और भी कपड़े रखे हुए हैं उसके आसपास और उधर जमे हुए भी कपड़े रखे हुए हैं उसके पास।

रोड के पास एक मकान भी दिख रहा है जोकि व्हाइट कलर के ऊपर राउन्ड ब्राइट कलर से है। ग्रीन कलर के पेड़ भी लगे हुए हैं जोकि --

यहाँ पर कप मगगे की दुकान है।